इसके ब इसका नाम बदन बैंक है ये नीले कलर में लिखा हुआ है इसके बाहर शीशे लगे हुए हैं कांच लगा है।

यह एक मंदिर है जिसके आगे बुद्ध भगवान की फोटो लगाई हुई है और इसका डिजाइन बहुत सुंदर है और यह --

इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं।

कांच के गिलास इसके आगे एक शीशा लगा हुआ है बड़ा सा टेबल के ऊपर और इसमें टिफिन भी मिलते हैं और छोटे छोटे छोटे बड़ी चीजें सभी मिलती हैं।

एक लड़का है और इसके पास में एक कूलर है इसके पीछे बहुत बड़ा एक टॉवर है पीछे-पौधे भी है इधर एक बिल्डिंग है पास में एक गाड़ी के ऊपर --

यह एक विद्यालय में दो लड़के बैठे हैं और एक मैम उनके पास है ये --

पांच लाइनों में कम्प रखे हुए हैं इसके अंदर कम्प उप्रिय पर चार कम्प रखे हुए हैं और नीचे इसके छे कम्प रखे हुए हैं इस प्रकार से इसमें --

उसके पीछे पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे है इसके पास में ये केले का पौधा है और --

यह बहुत बड़े पहाड़ है इनके बीच में एक महिला और एक जेंट्स है जो --

यहां पर दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे एक गाड़ी और है इसके--

के पौधे हैं इसके ऊपर एक पानी की टंकी भी है घर के ऊपर ये घर के इसके आगे रोड भी हैं घर के आगे ये कार खड़ी है।

और रूम के पीछे पहाड़ है बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे ये शिवजी की फोटो बनाई हुईं हैं।

यहां पर एक बलफ लगा हुआ है इसके अंदर इसके अंदर एक दो कुछ सी_सी_टी_वी कैमरे दिखाई दे रहे हैं।

पास में छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई हुई हैं जिसके पास में बहुत बड़े बड़े दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आगे इसके पत्थर है बहुत छोटे छोटे।

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होटल है इसके पीछे पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारी संख्या में और --

और यहां पर पेड़-पौधे है इसके पीछे बड़े-बड़े पेड़ हैं और आगे कुछ पार्क सा बना हुआ है जिसमें दुब लगी हुई है।